और दूर एक रेजिडेंशल स्कीम है वो दिखाई दे रही है।

ये एक नई बिल्डिंग बनी हुई है और उसके नीचे नई शॉप अभी किसी ने खोली हुई है।

की एक पाठ नगर कहते है उसकी फोटो हैं।

और साथ में जो भाई है वो बर्गर भी खा रहे हैं।